या कोई शादी जैसा कोई फंक्शन हो गया उसमें ऐसा दिखाई दे --

और आकास भी बदले से घरा हु घिरा हुआ नजर आ रहा।